हरी कलर की साड़ी और पीछे की और ऐसी लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक घड़ी दिखाई दे रही है।

दे रहे यहाँ पर ऐन्टीना दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक पोल दिखाई दे रहा लाइन का आगे की ओर कार खड़ी हुई दिखाई दे --

दिखाई दे रहे ओर ऊपर और सफ़ेद कलर --